बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और और --

एक अ एक गेट है बहु बहुत बड़ा गेट है और आदमी है और यहाँ प्रयोगता --

बहुत जनसंख्या में और सब लोग दौड़ रहे है सब लोग खिलाड़ी दौड़ रहे है।

य हरे-भरे हरे-भरे हैं और जानवर को अलग से घेरा गया है और --